एक साड़ी का सेंटर भी दिखाई दे रहा है।

एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति सामने की ओर खड़ा हुआ है।

एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

झूले के सपोर्ट के लिए एक खंभा भी लगा हुआ है।

इसमें कांच का दरवाजा लगा हुआ है।

ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

एक टेबल है जिस पर कुछ चिपका हुआ है।

इस तस्वीर में एक होटल दिखाया गया है।

कुछ कपड़े लाल गुलाबी नीले और सफेद भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे टाइलें भी लगी हुई हैं।

जिसमें पटरियां दिखाई दे रही हैं।

और पास ब्रिज भी बना हुआ है।

ऊपर से ढका हुआ भी बना हुआ है।

एक मेट्रो भी दिखाई दे रही है।

वाहन जाते और आते दिखाई दे रहे हैं।

एक स्पीकर रखा हुआ है।

और टॉफी के पैकेट रखे हुए हैं।

पारले-जी के पैकेट्स रखे हुए हैं।

और भी बहुत सारे चीजे रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

पास में ही एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसपर स्टीकर वह क्यू_आर कोड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिन्होंने जूते पहेन रखे है।

पत्थर पर एक खुरदुरा निशान भी पड़ा है।

एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

जहाज से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

विंडो में परदे लगे हुए हैं।

मेट्रो स्टेशन को ऊपर से ढका हुआ--

यह तस्वीर एक पार्क की है।

इसमें बहुत बड़ी बड़ी घाश लगी हुई है।

कुछ लोग मैट पर बैठे हुए हैं।

अंदर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है।

कुछ फ्लावर पॉट भी रखें दिखाई दे रहे हैं।

दरवाजे के ऊपर कुछ गमले टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक पार्क की है।

जिसमें दो झूले लगे हुए हैं।

कुर्सियों पर क्रीम कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है।

ऊपर एक टेडी बियर लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ रैकें हैं जिसमें टेडी बियर रखे हुए हैं।